वैसे हॉल में मोझे पिंक कलर दिख रहा है और यहां पे--

बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं और--

यहां पर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है मकान भी दिख रहा।

खेल और दोनों तरफ गार्डन है और एक बोर्ड लगा हुआ है वो है।

और लाइट भी जल रही है और यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है और इधर मुझे--

यहां कुछ दिख रहा है। ब्लैक कलर और व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है और ये --

ब्लैक कलर दिख रहा है और यहां पर व्हाईट कलर का कुछ दीवार बने हुए है और यहां पर मुझे--

येलो कलर दिखाई दे रहा है और मुझे अनार और नींबू दिखाई दे रहे हैं।

और उसने माँस लगा रखा हुआ है। यहा पे लड़का उन खड़े उन सभी ने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट पहेन रखी हुई यहा पर कु --

लेडिस और कुछ लोग खड़े हुए हैं सब ने अलग अलग कपड़े पहेन रखे हैं।

उम्म सिल्वर कलर के हैं और उसने बेल्ट --

कर रहा है और उसने बि ब्ल्यू --

आवाज को देख रहा है यहां पर मुझे गमले भी रखे हुए दिख रहे हैं। वह वाइट कलर के--

और उसमें पंखा भी लगा हुआ एक बाइक खड़ी हुई है।